अलमारियां व गेट बने हुए हैं कुछ कमरे बने हुए है इसके आगे एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है।

इस बिल्डिंग के गुलाबी रंग किया हुआ है और आस पास में कुछ जंगले भी बने हुए हैं जिनके अंदर बहोत सारी लाइटे भी जल र --

पंख में थोड़े थोड़े निशान--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

और एक कांच की खिड़की बनी हुई है जिसके अंदर कुछ पुरस्कार फ्रेम वगैरा रखे हुए हैं और लाइट जल रही है परदे लगे हुए हैं।

ये एक चौराहा जिसके है इसके अंदर बीच में दो बसें खड़ी दिखाई दे रही है और आसपास कुछ --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

यह एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है जिसके अंदर कुछ कूलर पंखे और फ्रिज वगेरह मिलते है।

पास में पेड़ दिखाई दे रहे हैं और आसमान साफ दिखाई दे रहे हैं आसपास कुछ भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसके ऊपर ब्लैक कलर की गाड़ी जा रही है सामने तो रेस्टोरेंट ढाबा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर लाइट जल रही है।